ये लेडीजस शोरूम है जहाँ ढ़ेर सारी स्टेचूस खड़ी नज़र आ रही है।

सामने ब्लैक कलर की बाइक खड़ी है बाइक के पीछे ग्रीन कलर का रिक्शा खड़ा हुआ है।

ये एक मंदिर है रेड कलर का। जिसके पीछे है --

और एक बड़ी छवि में नीम्बू रखा हुआ है जहाँ सामने कुछ लोग खड़े हुए है।